यहाँ पर बहोत सारे ए चीज़ो को देखा जा सकता है। ऊपर के तरफ कुछ लाइटे लगी हुई हैं। कुछ सामाने को रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ में कुछ बाइके खड़ी हुई नजर आ रही है। ऊपर के तरफ में बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है। सामने लाइट की तारे भी जलती हुई देखी जा सकती हैं।

और यह जो है वह ग्रीन कलर के बहोत सारे से सजाया गया है।

जिसके ऊपर मे कुछ चीज़े बनी हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर में कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। कुछ खिड़किया भी देखी जा सकती हैं।

यहाँ पर बहुत सारे बसों को एक साथ देखा जा सकता है। सामने कुछ ईटें रखी हुई दिखाई दे रही हैं। अगल बगल में कुछ स्कूटी टी.वी --